बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं और सामने नीचे एक रैक दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहोत बड़ी पीले कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके नीचे एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है एक खंभा भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं एक रोड है।

सामने एक कपड़े का शॉप दिखाई दे रहा है जिसमें दो टेबल लगे हुए हैं कांच के।

और एक कार है जिसका मिरर दिख रहा हैं उसका मिरर का कलर ब्लैक दिख रहा है।

ये एक बाइक की शोरूम नजर आ रही है जिसमे दो बाइक दिखाई दे रहे है एक का गोल्डेन व सिल्वर ब्लैक कलर दिखाई दिया है एक का रेड ब्लैक सिल्वर --

एक टॉयलेट दिखाई दे रहा है जिसका कलर सफेद दिख रहा है।

ऊपर में टंकी लगी हुई अटैच दिख रही है वो वाइट कलर की है।

सामने एक बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें व्हाइट कलर में केंद्रीय विद्यालय नंबर दो रायपुर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है साइड में ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

यह एक आदमी कार बनाते हुए दिखाई दे रहा है वाइट कलर की कार नजर आ रही है।

टेबल नजर आ रहा है जिसका कलर ब्राउन दिख रहा है दो बैग दिखाई दे रहे है बॉक्स भी दिखाई दे रहे एक दरवाजा नजर आ रहा है जिसका कलर ब्लू हैं।

रेड कलर की एक टायर नजर आ रहा हैं काले कलर का एक पेड़ दिखाई दे रहा है पीछे क्रीम कलर का बिल्डिंग नजर आ रहा हैं।

ब्लैक नजर आ रहा है एक खिड़की दिखाई दे रही है एक सॉकेट नजर आ रहा है।

सारी सिटी नजर आ रही है जिसका कलर ब्लैक एंड ब्लू दिखाई दे रहा है साइड में बहोत सारे पर्दा लगाए हुए--